छरी भी रखा हुआ है और बांस भी बांधा हुआ है।

यह एक घर है घर में बहुत सारे खिड़कियां दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारा झंडा भी लगाया हुआ है जो कि रेड कलर का है।

यह एक रूम है रूम मे बहुत सारे लोग खड़े है।

पोस्टर भी लगाया हुआ है और लाइट भी लगाया हुआ है।

यह एक रूम है रूम में बहुत सारा कुर्सी लगाया हुआ है।

खिड़की में पर्दा भी लगाया हुआ है और सोफा भी रखा हुआ है सोफा पे बैग भी रखा हुआ है।

सामने बहुत सारा सीमेंट का बोरा रखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है अल्ट्राटेक और कोणार्क ।

सामने बहुत सारे लड़कियां दिखाई दे रहे हैं और सभी एक ड्रेस पहने हुए हैं।

दो झंडा दिखाई दे रहा है जो रेड कलर का है और बादल भी दिखाई दे रहा है।

दीवार को व्हाइट कलर से ब्लू कलर से पेंट किया गया है।

बगल में घर दिखाई दे रहा है और पीछे पेड़ भी दिखाई दे रहा है और बादल भी दिखाई दे रहा है।

और बाउंड्री भी दिखाई दे रहा है बगल में एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है।

सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो की अलग अलग ड्रेस पहने हुए हैं।

और ऊपर से तार भी ताना हुआ है और एक बाइक भी लगाया हुआ है।

पंखा भी लगाया हुआ है और वायरिंग भी किया हुआ है।

सामने बिल्डिंग दिखाई दे रहा है बिल्डिंग बहुत सारा डिजाइन बनाए हुए हैं।

बाहर में गाड़ी लगाया हुआ है और साइकल भी लगाया हुआ है।